एस_बी_आई ए_टी_एम लिखा हुआ है।

उसमें एक लड़का अंदर है।

इस दुकान में एक टेबल भी रखी हुई है और एक कुर्सी भी--

एक बेड रखा हुआ है।

और कुछ लोग घूम रहें हैं।

यह एक स्टेशनरी है जहां पर--